इस फोटो में एक आदमी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है जोकि इंजीनियर लग रहा है। इसके पीछे का एक कोई ट्रांसफर्मर जैसी चीज है जिसका कलर लाइट ब्लू जैसे है।

फ़ोटो किसी मंदिर का है जिसके आगे होम नमः शिवाय लिखा हुआ है।

यह आदमी इस कलोनी का गाड लग रहा है और यहाँं पे दीवाल की कलर जो है वो रेड एंड वाइट है और यह बहुत अच्छा दिख रहा है।

यह फोटो किसी मंदिर का है जिसके प्रांगन में कुछ फूल खिले हुए हैं और कुछ लगाये गये हैं जिसमे दो मंदिर भी है।

यह फोटो किसी पार्क का है जहां पर शायद ये कुआं है।

और कुंए से पानी निकालने के रस्सी का यूज़ किया जाता है। यहाँं पर तीन-त-तीन तरफ से पिलर बनाया गया है।